यह एक पहाड़ की फोटो है जहाँ पर बहुत सारा बर्फ है और यहाँ पे सब कोई स्कीन कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग स्वेटर पहन के बहुत मोटे-मोटे स्वेटर पहन के खड़े हैं।

यहाँ पे दूर-दूर तक बहुत सारा पेड़ है जो की सूख चुका है ठंड की वजह से और यहाँ पे बरफ बहुत सफेद सफेद दिख रही है।

यहाँ पे बहोत सारा लोहा का छोटा छोटा पतला पतला पिलस भी दिख रहे हैं जो की दिखने मे बहोत अच्छा लग रहा हैं यहाँ पे रोशनी भी बहोत है।

और बगल में एक बिल्डिंग में आदमी लोग छत से खड़े हो के ] देख रहे है।

उसके पीछे सैलून के सामने बहुत सारे हेयरकट के फोटो भी लगे हुए है अंदर में कोई बाल कटा रहा है।

यह एक फैक्ट्री का फोटो लग रहा है जहां पे बहुत सारे मजदूर खडे हैं और सब ने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ है।